यहाँ पर हम देख पा रहे है की एक रोड है रोड पे एक रिक्शा चल रही है उसके सामने बड़ा सा मैदान है मैदान की जमींन हमें दिखाई दे रही है मिट्ठी भी वहाँ के दिख रहे है।

सामने बड़े - बड़े पेड़ है आसमान एकदम साफ दिखाई दे रहा है और एकदम आगे की तरफ बड़ा सा पेड़ है और छोटा सा डिवायडर बना है जिसपे दो लड़के --